और यहां कुछ आदमी खड़े है।

यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हैं।

और यह सड़क भी बनी हुई है।

और यहां दुकान है इसमें शीशे भी लगे हुए हैं।

छोटी छोटी बसें भी है और यहां गेंद भी रखी हुई है।

पुलिस के बैरियर भी लगे हुए हैं।

और यहां पुल भी बना हुआ है कुछ पेड़ भी है।

लोहे के गेट भी लगे हुए हैं बाइके भी खड़ी हैं।

और औरत अउर बच्चा और कुछ आदमी भी खड़े हैं।

कुछ आदमी भी खड़े हुए और बैठे हैं।

यहां पे ये सड़क है।

और यहां पाइप भी लगे हुए हैं।

और इनमें झंडे भी लगे हुए है।

यह एक बहुत बड़ी जिम है।

और इसमें काउंटर भी रखा हुआ है।

यहां पे यह दुकान है।

और यहां क्रेटों के ऊपर बहुत सारे--

में फल रखे हुए हैं।

केला भी है अमरुद भी है सेब भी है नारियल पानी भी है।

यहां पे ये एक दुकान है।

और यहां पेड़ भी बहुत सारे लगे हुए हैं।

यहां पे ये एक बड़ी जिम है।

यहां पे पीछे एक शिव हुआ है।

यहां पे ये बहुत ऊंचा बड़ा स्कूल बना हुआ है।

नीचे ईंट भी बिछी हुई है।

और बसा भी खड़ी है स्कूलों की।

और पीछे बहोत लंबे लंबे पेड़ खड़े हुए हैं।

डभली भी रखी हुई है और बीन भी बजा रहे है।

कुछ आदमी खड़े हुए हैं बाइक भी बाहर खड़ी है।